और ए_सी लगा हुआ है एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है।

और खिड़कियां बनी हुई है बोर्ड लगे हुए हैं जो की ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड है।

और उसके सामने काफी सारी जो है बिल्डिंग्स बनी हुई है।

आदमी ने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट डाली है।

ये एक पार्क की फोटो है जिसमें काफी सारे जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है छोटी छोटी घास है।

ईंटे लगी हुई है हुई है वाइट कलर की टाइल्स हैं।

चेयर पड़ी हुई है और जो रैक है उनमें अलग अलग कंपनी के बॉक्सेस रखें ह--

और हनुमान जी की मूर्ति है माता जी की मूर्ति है।

जिनमें कुछ लोगों ने व्हाइट ड्रेस और ब्लैक कोट डाला है।